कुछ सीढ़ी है एक रास्ता है जिसमे एक लड़की जा रही हैं।

दिख रहे है चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ हैं।

मिट्टी कलर के दिख रहे हैं हरा-हरा घास छोटे-छोटे दिख रहा हैं।